यह एक सुजुकी है जो अभी-अभी लिया गया है और अगल-बगल में बोहोत सारे कार भी है जो रखे गए है और इसको अभी पूजा किया गया है।

हमारा बगल में ही है और बोहोत ही अच्छा बाजार है और यहाँ पर हमेशा बहोत ही ज्यादा भीड़ लगे रहते हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छे-अच्छे चीज़ बेचा जाता है ।

यहाँ पर बहोत सारी मछलिआँ हैं जिसको तलाब से पकड़ के लाए हैं और अब इसको बेच भी सकते हैं या नहीं भी ।

यहाँ पर एक दुकान है और दुकान में सब कोई अ खरदीने के लिए आते है और अच्छे-अच्छे सामान खरीद के भी जाते है और दुकानदार भी बहोत अच्छे हैं जो अच्छा-अच्छा चीज ही देते हैं वो --

बहोत अच्छा दिख रहा है उसमें जंग पड़ गया है।